यहां पर आप जो देख रहे हैं यह एक सुंदर सी पिक्चर दिखा--

एवम ब्लैक कलर की सीढ़ी सी दिखाई--